बड़ा सा पहाड़ है।

साइड में चार पहिये का वाहन खड़ा है और एक बैनर लगा है बैनर सफ़ेद कलर का है जिसमें लाल कलर से कुछ लिखा है |

ऑटो के पीछे एक गोल-सा टायर लगा है जिसका ब्लैक कलर है।

एक कपड़ों की दुकान हैदुकान में कुछ कपड़े तहे हुए रखे हैं। कुछ कपड़े हेंगर में टंगे हुए हैं।